यहाँ पे बहुत सारे विल्लेज दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सा एक ताल और एक टंकी है।

येलो और व्हाइट कलर का बोट हैं।

ये एक रूम है छोटा सा बेड दिखाई दे रहा है और दो पिलो हैं दो चादर रखे गए हैं।

राजेश पुस्तक प्रतियोगिता सेण्टर लिखा गया है बड़ा सा बोर्ड है।